और बहुत सारा टेबल भी दिखाई दे रहा है।

और एक बास्केट भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

रूम में दो सोफा दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहुत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है।

फ़िर बहोत सारा गाय भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक ग्रीन कलर का टीना घर भी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक डस्टबिन में दिखाई दे रहा है।

डस्टबिन के अंदर में पेपर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।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

ट्रेन का सामने बहोत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

मे बहोत सारा आदमी जमा के दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।

एक सुगरकेन का घास भी दिखाई दे रहा हैं।

लीची का शायद बहोत सारा पता भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में दो आदमी दिखाई दे रहा है।

इधर एक ट्राली भी दिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।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

पीछे में एक लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रहा है।

सामने बहोत सारा बैंबू भी दिखाई दे रहा है।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

अंदर में बहुत सारा टेबल भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यह बहुत सारे टेबल भी दिखाई दे रहा है।